सूर्य का प्र प्रकाश इस जल में पड़ करके और भी बहुत ही अत्यधिक सुंदर प्रतीत हो रहा है बहुत ही सुंदर यह दृश्य हैबहुत ही अलौ--

इस चित्र में बोहोत ही सुंदर दृश्य दिखाया गया है जिसमें कई सारे सूर्यमुखी के पौधे हैं और इसके आसपास पहाड़ भी हैं।